यहाँ पर सीढ़ी है यहाँ पर सीढ़ी है और यहाँ पर एक दो हैं यहाँ पर दो चप्पल खुला --

इ पेड़ है ब उ उधर भी इधर भी पेड़ है और --

एयरटेल मोबाइल खरीदने लगता है जा रहा है।

यहाँ पे एक पेट्रोल का दुकान है उ अथि है रात का समय है लाइट है और उसे बोलेरो लगल है पेट्रोल भराएगा उसमें और अ उम्म दू लिखा दू --

टू लिख़ल है और दू गो पेज चिपक --

और यहाँ पर तो आए एक आदमी जा रहा है।

बहुत पंखा लगल हेय उधर भी घर है।

यहाँ पर कपड़ा सिलाता है हम भी सिलाए हैं।